रेड कलर का जो चादर है वहां पर लेटा जाता है और--

एक कुर्सी है वहां र वहां पर एक भगवान की--

और वहां पर एक चादर है कुर्सी के ऊपर।

ऐ जाने के लिए रास्ता भी ऊपर से नीले रंग का और वहां पर बहुत सारे--

इस तस्वीर में एक अच्छा सा टेंट दिख रहा है वो जो गुलेबी और--

कांटेक्ट कर सकते हैं उनका वहां पर कांटेक्ट नंबर भी दिया है ।

जरूरत पड़ेगी तो हम लोग डेकोरेशन एंड कैटरिंग का काम--

और बहुत सारी कुर्सियां है और वहां पर सफेद रंग का क्रिश्चियन का--

और रेलवे स्टेशन की पटरी है वहां पे--

पीले कलर के लाइट से हा येरो वहां पर डेकोरेशन का भी बनाया हुआ बैकग्राउंड है बहुत सारे लोग हैं बहुत सारे--

यहां पर एक केबिन दिख रहा है केबिन है सो ब्राउन कलर का मतलब--

और बहुत से मुर्गियां हैं और सफेद रंग के मुर्गियां हैं ।

बहुत सारे मुर्गीयां हैं तो हम उनसे चिकन खरीदते हैं।

इस तस्वीर में जहांज और बहोत सारे लोग जहांज चला रहे हैं।

सफेद और ब्राउन है और वहां पर रोड के--

वहां रोड के ऊपर एक ट्रक भी आ रही है ।

ऊपर का स्लैब जो है वाइट कलर का है और फैंस भी है बहुत सारे ।

गोल्डन एंड ब्लू में है और ऊपर भी--

मेडिसिन भी मिलते हैं और अदर प्रोडक्ट्स में मिलते हैं वहां पर कुछ लोशन वैसलीन --

जो लगता है मेडिकल के मेडिकल है और उसके अंदर--